यह एक मार्केट का दृश्य है मार्केट में बहुत भीड़ भाड़ है।

कमरे में एक बड़ा घड़ी भी लटका हुआ है।

ऊपर लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी लिखा हुआ है।

यहां पर एक व्यक्ति सेल्फी ले रहा है।

बिल्डिंग के आगे एक बहुत ही बड़े अक्षर में पल गढ़वा पॉलीटेक्निक लिखा हुआ है।

नारियल के भी पेड़ है और खजूर के भी पेड़ है।

हर एक मीटर पर नंबरिंग लिखा हुआ है।

दुकान के अलमीरा में बहुत सारे बर्तन रखे गए हैं सारे बर्तन नए हैं।

सारे डिब्बे एक के ऊपर एक रखे गए हैं।

रोड के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर एक मोटरसाइकल को धोया जा रहा है।

और बहुत सारे जिम करने वाली मशीनें भी लगी हुई हैं।

मंदिर के आगे एक व्यक्ति खड़ा है।

पिंक कलर का टी शर्ट पहना है और ब्लैक कलर का नीचे जींस पहना है।

शो प्लांट की जड़ में रंग बिरंगे लाइटे लगी हुई है।

और एक फोर व्हीलर है और बहुत सारे ट्रक लगे हुए हैं।

पेट्रोल पंप के आगे बहोत सारे शो प्लांट्स लगे हुए--

और वहां पे बड़े से अक्षर में आई लव इंडियन ऑयल लिखा हुआ है।

अजय उद्यान नगर परिषद लोहारदगा लिखा हुआ है।

स्विमिंग पूल के चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ है।

इस कमरे में एक पुरुष और पांच महिलाएं हैं।

इस दुकान में बहुत सारी अलमीरा बनी हुई है।

बैग के दुकान के बगल में एक और दुकान है वहां पर दो पुरुष भी खड़े हैं।